सामने एक फोटो देखने को मिल रहा है और उसके ऊपर एक ब्रिज है और आसमान का रंग नीला नीला दिखने--

जिसका रंग लाल है और नीचे बहोत सारे पिलर भी देखने को मिल रही है।

यहाँ एक मकान देखने को मिल रही है यहाँ पे बहोत सारे बोर्ड भी देखने को मिल रहे है और--

बहोत सारे लोग भी यहां पे देखने को मिले रहें है और अलग प्रकार के बॉक्स भी यहां पर देखने को मौजूद है।

और एक कमरा भी देखने को मिल रही है जिसमे लोग अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे है और एक पुरफ़िरे --

सामने एक मैरिज हॉल देखने को मिल रहा है जिसका गेट गोल्डन कलर का है।

और अः यहाँ पर एक पिक्चर भी देखने को मिल रहा है और एक ग्रिल भी है और अंदर से लोग आते नज़र आरहे है।

यहाँ सामने एक वाशरूम नज़र आरहा है जहा पर एक टॉइलेट नज़र आरहा है।

सामने एक रेलवे की पठरी दिख-देखने को नज़र आरही है और यहाँ पर एक लाइन का पिलर भी देखने को मिल रहा है।

पता नहीं टाइप का भी लगा हुआ है और बीच में एक छोटी सी नदी भी बह रही है।

सामने एक बड़ा सा दुकान देखने को मिल रहा है जिस के अंदर एक लोग देखने को मिल रहा है।

यहाँ पर एक अः गैस भी देखने को मिल रहा है और एक चेयर भी और ऊपर पंखा भी लगा हुआ है।

सामने एक बड़ा सा बगीचा देखने को मिल रहा है यहाँ पर दो घ छोटे छोटे घर भी देखने को मिल रहा है।

और छोटे छोटे हरे हरे पौधे भी देखने को मिल रहे है।

सामने एक दुकान देखने को मिल रही है यहाँ पर कई सारे तले हुए पकोड़े देखने को मिल रहे है।

और कुछ लोग यहाँ पर सामान रखते हुए नज़र आरहे है और ऊपर में दीवाल का रंग पीला दिखाई दे रहा है।

और एक फ्रिज भी है और कुछ लाइटे भी लगी हुई है।

यहाँ पर कई सारे पिलर भी है और ऐ कई सारे लोग देखने को मिल रहे है।

सामने एक मोबाइल की शॉप देखने को मिल रही है इसके बहार एक गाड़ी देखने को मिल रही है जो की काले रंग की है।

और एक आदमी भी यहाँ पर मौजूद है और दुकान के बहार उम्म बहोत सारे बेलून भी देखने को मिल रहे है।

और अंदर में कई सारे फ्रिज भी देखने को मिल रहे है।

और यहाँ छोटे छोटे हरे हरे पौधे भी देखने को मिल लहे है।

और एक डाय डाइनिंग टेबल भी लगी हुई है और यहां पर दीवाल का रंग पिंक है और--

शिशा भी देखने को मिल रहा है और बहोत सारे पोस्टर भी सटे हुए हैं और एक पंखा भी देखने को मिल रहा है और कुछ बल्ब --

ये मगरमच्छ का बड़ा सा गुंबद लग रहा है और यहाँ पर बहोत सारे लोग मौजूद हैं और--

एक छोटा सा घर भी दिखने को मिल रहा है यहाँ पर बहोत सारे पेड़ भी देखने को मिल रहा है और ऊपर आसमान का रंग नीला है।

सामने एक बड़ा सा माकन देखने को मिल रहा है जिसका रंग वायलेट कलर का है और अः कुछ अः यहाँ पे --

पंखे भी नज़र आरहे है और बड़े बड़े पोस्टर भी देखने को मिल रहे है।

ला है जिसमे कुछ कोई जूस देव्-देखने को मिल लहा है उसका रंग लाल है।

और दीवाल का रंग लाल है और नीचे में पलाई का कुछ बना--

सामने कई सारे दुकान देखने को मिल रहे है जिसमे कई सारे पोस्टर भी देखने को मिल रहे है।

ओर यहाँ पर कई सारे गेट भी देखने को मिल रहे है और कुछ खिड़किया भी देखने को मिल रही है।

और बहुत सारे मकान भी देख ने को मिल रहा है मकान का रंफ ईट कलर का है।

सामने एक बगीचा देखने को मिल रहा है यहाँ पर एक औरत काम करते हुए दिखाई दे रही है।

और ऊपर में कुछ वायर भी देखने को मिल रहा है और ऊपर आसमान का रंग नीला है।

सामने एक बड़ा सा नदी देख ने को मिल रहा है और कुछ मंदिरे भी देखने को मिल रहा है।

सामने दो बड़े से मकान देखने को मिल रहा है।

और ऊपर में कई सारे वायर भी देखने को मिल रहा है और कई बड़े बड़े पेड़ भी नज़र आरहे है।

नीचे में कुछ गड़िया और कुछ साइकिल देखने को मिल लहे है।

और नीला कलर का आसमान दिख रहा है और बहोत सारे पेड़ भी देखने को मिल रहा है।

यहाँ सामने बहोत ही बड़ा मैदान देखने को मिल रहा है और कुछ बहोत सारे पेड़ भी देखने को मिल रहा है।

आसमान का कलर नीला है और बहोत सारे लोग टहल कर आपस में बाते कर रहे है और कुछ लोग बैठे हुए नज़र आरहे है।

और आदमी सब जो चश्मा पहने हुए उसका रंग काला है और कई सारे जैकेट भी पहने हुए हैं।

सामने एक बड़ा सा मकान देखने को मिल रहा है जिसका रंग उजला है और एक पिलर भी देखने को मिल रहा है।

यहाँ कई सारे गेट और खे कीआ भी देखने को मिल रही है आसमान का कलर नीला है।

और बड़े बड़े पेड़ पौधे भी देखने को मिल रहे है।

सामने एक अः शॉप देखने को मिल रहा है और अंदर में कई सारे समान रखे हुए है अलग अलग प्रकार के--

और यहाँ पर सीढी भी देखने को मिल रहा है जहा पर कई सारे मोमबत्ती भी जलाए हुए है।

कई सारे चेयर भी है और कई लोग मिलकर खाना खाते बात करते नज़र आरहे है।

पर है और यहाँ सामने कुछ टाइल्स का बना हुआ है और गाड़िया भी दिख ने को मिल रहा है।

चेयर भी देखने को मिल रहा है एक पानी का बोतल भी है और कई सारे अलग अलग प्रकार के बोतल भी है।

और कई सारे लाइटे भी लगी हुई है एक पंखा भी देखने को मिल रहा है।

और यहाँ पर कई सारे केले के पौधे नज़र आरहे है और कई सारे लाइटे भी नज़र आरही है।

और बहोत सारे पेड़ पौधे भी देखने को मिल रहा है और मकान का रंग लाल और उजले कलर से पेंट --

दिया गया है और ऊपर में कुछ व झँटी बजे--

कई लोग भी देखने को मिल रहे है और मंदिर का कलर वाइट है और बहार में तो सी--

पेड़ पौधे भी देखने को मिल रहे है और छोटे छोटे घास भी देखने को मिल रहे है जिसका रंग हरा है।

सामने एक बड़ा सा मकान देखने को मिल रहा है जिसमें एक--

ऊपर सूर्य की रौशनी भी आरही है और सूर्य का रंग नीला कलर का है।

सामने बड़े से पहाड़ सब नज़र आरहे है और बहोत सारे पेड़ भी देखने को मिल रहे है।